और वह चप्पल भी पहना हुआ है उसका मुंह ब्लर किया गया है एवं यहां पर बैलून भी सजा हुआ --

और यहां पर स्टील की मदद से रेलिंग भी लगाया--

और यहाँ पर गुलदस्ता भी रखा हुआ है जिसका रंग वाइट ब्लू पीला और रेड है।

बहुत सारे दवाइयां दिख रही हैं और डिब्बे का रंग बहुत रंग बिरंगे है।

यहाँ पर बहुत सारे बैलूनो से सजाया गया है जिसका रंग ऑरेंज वाइट और रस्सिंयों से सजाया--

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर कई प्रकार के चीजें रखे गए हैं।

लड़की एक लड़का भी है जो की हाफ पैंट और शर्ट में जा--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

एक औरत साड़ी पहनी हुई है जिसका रंग ब्लू है।

एवं यहां पर शीशे भी है और बहुत सारे क्रीम दिख रहे हैं।